और गाछ हरा रंग का है दो ठो लाल कलर का है।

और दो आदमी है व आदमी घूम रहा --

और उसके अगल-बगल में गाछ है और गाछ को आधा पर से ब उजला कलर का आ रंगा हुआ है।

और कुछ सर्फ़ हैं और उसके अंदर पारले-जी बिस्कुट है।

यूनियन बैंक और उसके आगे गे गेट है उसके सामने छत है।

उसके सामने एक पुल है पुल के निचे एक पोस्टर लगा हुआ है।

और उसके बगल में और अ और पूजा का समान बिक रहा है।

यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है की एक तलाब है तलाब के अंदर एक जेंट्स खड़े हुए हैं।

किनारा टेंपु लगा हुआ है और कुछ मोटर साईकिल पर जिनसे --